इन्होंने तिलक लगाया हुआ है। पीछे चट्टान है।

जिम टाइप एक्सरसाइज का है जो एक पर्सन औरेंज कलर की शर्ट पहने हुए।

और ये मिट्टी है यहां पे रास्ता जा रहा है आसमान हैं।

खड़े होके शीशे में अपनी इनर ऊपर उठाए अपने देख रहा है।

यहां मैं देख पा रही हूं ये एक राउंड कलर का गोल चक्कर बनाया गया है जिसके पास एक साइकल खड़ी हुई है और उस गोल चक्कर के आस पास ही ये --

गाड़ी वाला गाड़ी को सही करता हुआ दिखाई दे रहा है।

और ये सामने रेड कलर की टि_शर्ट पहने एक लड़का खड़ा है उसके पीछे गिरते भी है घर भी बने हुए हैं और ये--

यहां पे मैं देख पा रही हूं कि ये लक्कड़ परे --

एक आकृति दर्शाई गई है जिसमें ये पेड़ है नीचे इंसान है कोई पानी भर रहा है कोई मिट्टी में काम कर रहा है।

नीचे शायद पानी जा रहा होगा ये पहाड़ दिख रहा है ऊपर आसमान दिख रहा है इसमें और भी मतलब ये रेलिंग कच्ची सी लग रही है अभी--

ये परफॉर्मेंस देखने के लिए आए हुए हैं और ये--

कई लोग अपनी गेम खेल रहे हैं पिछे ठंड का टाइम दिख रहा है धुंद है।

पास पेड़ लागा के झंडा लटकाया गया है।

ये बच्चों को कुश्ती करते हुए दिखाया जा रहा है जिसमें सारे बच्चे--

दिख रही है जो झुकी हुई है काफी येलो कलर की साड़ी में है जो चट्टान के बीच में है और उसके ऊपर हरे भरे घास और झंगाड़ी निकली हुई है।